और साइड में हमें एक बड़ा सा और एक पोस्टर है जिस पर स्कूटी की फोटो दिख रही है और यहां पर हमें चॉकलेटी कलर --

लिए हुए ठहरा है और वो डॉक्टर कान में कुछ देख रहा है और साइड में हमें वो--

इसमें हमें दो गाड़ियां दिख रही हैं और इसके साइड में हमें और एक बोलोरो दिख रही है।

और उसके साइड में हमें तीन बाइक नज़र आ रही हैं जो फाक की हुई है।

कलर का नाम है स्लीपर कोच कुंवर बोलकर लिखा है और साइड में एक ऑटो है --

और एक आइसक्रीम वनिला दिख रहा है और एक बटर स्कॉच और एक --

यहां पर हमें एक लड़का दिख रहा है जिसमें मुंह आधा फेस दिखाया हुआ है और यहां पर हमें उसकी कटिंग दिख रही है।

कुछ अ बुक्स को गा गिलास के मिरर डोर से बंद किया हुआ दिख रहा है और साइड में हमें नोट बुक्स भी दिख रहे हैं।

यहां पर हमें एक कार दिख रही है वो भी टूटी फूटी हुई।

और वो आदमी गोगल्स पहने हुए बैठा है और उसके पीछे कुछ तीन औरतें दिख रही हैं।

नीचे कुछ आदमी ठहरे हुए दिख रहे हैं और एक आदमी चेक्स का टीशर्ट खविज पहना हुआ है --

और वो दरवाजे के आसानी है दरवाजा अभी बंद दिख रहा--

और इसमें पंखा भी लगा हुआ दिक्ख रहा है और बलूंस भी दिक्ख रहे हैं जो रेड व्हाइट ऑरेंज कलर पिंक कलर में है।

और साइड में हमें एक व्हाइट कलर रेड कलर के बैग --

छत पर दो बच्चे दिख रहे हैं और उनके साइड में एक बड़ा सा झाड़ है।

कुछ आदमी ठहरे हुए दिख रहे हैं और कुछ आदमी बैठे हुए दिख रहे हैं।

और कुछ नारियल के झाड़ भी दिख रहे है और पीछे हमें लाइटिंग करी हुई भी दिख रही है।